इस तस्वीर में एक बालक झूला झूलते हुए नजर आ रहा है।

अपने हाथ पे घड़ी पहेना हुआ है और एक बच्चे वाली गाड़ी भी यहा नजर आ रही है जो की लाल रंग की है ।

जो की डार्क ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है और ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ है।

यह तस्वीर में एक महिला एक चर्च के आगे फ़ोटो खिंचा रही है।

एक लेबर लुंगी पहना हुआ भी दिख रहा है आजू-बाजू में ढेर सारे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।